लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग के सामने हमें बहुत सारी घास दिखाई दे रही है जोकि हरी - हरी है ये --.

और यह हमें यह ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है और इसमें हमें बहुत सारे पाइप्स और मीटर लगे हुए --.

और यह पेड़ बहुत बड़े हो चुके हैं और येलो येलो दिखाई दे रहे हैं।

जैसा की हमे यहाँ दिखाई दे रहा है की यह एक हॉस्पिल है और इस होस्पिटल में आगे की ओर हमे एक ब्लू कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

जैसा की हमे यहाँ दिखाई दे रहा है की यह एक पहाड़ी ईलाका है और यहाँ पर हमें पहाड़ दिखाई दे रहे है जोकि इस पर हरी घास --

जैसा की हमे यहाँ दिखाई दे रहा है की यह एक पेड़ है और इस पेड़ पर हमे एक नांग महराज की मूर्ति दिखाई दे रही है।